ए कॉलेज के गेट है बड़े-बड़े और ये बहुत न् बड़ा कॉलेज है और ये दो मंजिला है और इसकी जो दरवाजे गेट है वो बन --

यहाँ पे बहुत बड़े ऑफिस हैं और यहां बाहर से एक कार खड़ी है एक बाइक भी खड़ी है एक यलो कलर की बस भी खड़ी है और ये बहुत बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं और दूर दूर भी हैं।

यहाँ पर एक पानी की तालाब है। इसमें दूर से तीन बच्चे भी दिखाई दे रहें हैं और ये पानी की ढाला हरी-भरी घास है ई अगल-बगल --

यहाँ पे जो पेड़ हैं बहुत बड़े-बड़े हैं ऊपर से पत्ते लगे हुए हैं और नीचे से ईंटें से सड़क भी बनाई गई है और ये बहुत नजारा सुन्दर है।

यहाँ पे बहुत सारी बाहर से बाईकें खड़ी हुई हैं। एक एम्बुलेंस भी है और यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है।

और ये घर बहोत न सुंदर लग रहा है। इसकी डिज़ाइन बहोत अच्छी है और यहां पे जो है ईंटें बने हुए है।

यह एक भैंस है और भैंस का बच्चा है और यहां पर उनके उजाले के लिए दो रोशनी भी छोड़ रखी है।

ये एक शॉप है। इसमें सी उ इ और इस शॉप में एक छोटा सा घोड़ी जैसा नीला कलर का बना कर रखा है। शॉप के अंदर बहोत सारा सामान है।

यहां पर गिटार लगा हुआ है और पियानो भी लगा हुआ है। घर में रखा हुआ है। बहोत सारी प्लेट और पेकिंग वाला भी है।

सूरज डूबने वाला है और दूर से बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं।